यह एक पावर हाउस है और यह पावर हाउस काफी बड़ा है।

बहुत सारे लोग आते हैं फेश वॉश कराने फेशियल कराने।

लोग यहाँ पे सामान खरीदना काफी पसंद करते हैं यहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में सामान दिए जाते हैं।

लोग आते है किताब खरीदने के लिए यहाँ पे काफी अच्छे-अच्छे क्वालिटी के किताबें मिलती है।

यह स्टेट बैंक की शाखा है और ये स्टेट बैंक काफी बड़ी है और यहाँ पे बोहोत सारे लोग आए हुए हैं |

टी.वी.एस. की गाड़ियाँ खरीदने टी.वी.एस. की गाड़ी बहोत ही स्टाइलिश गाड़ी होती है।

यह एक मॉल है और यह मॉल बोहोत ही बड़ा है इस मॉल में --